खूबसूरत सा रूम दिखाई दे रहा है।

अल्ट्रा सुपर स्पीडो लिखा हुआ है उस सइकल पे उस सइकल पे सीट नहीं है।

और एक कार नजर आ रहा है इस कार का चा गेट खुला हुआ है।

इस दृश्य में मुझे कपड़ा धोने की वस्तुएं दिखाई दे रही है।

उसके बगल में ब्लू बाल्टी में कार वॉशर रखा हुआ है।

और उसके बगल में एक और मूर्ति रखा हुआ है।

सूरज का किरण उस गार्डन पर पर रहा है।

के पीछे एक बड़ा सा स्कूल है जिसमें एक ए सी लगा हुआ।

कागज के बॉक्स भी दिखाई दे रहे है।

और एक नदी है जिसमें पानी कम मिताद में गिर रही।

तीन रैक रखे हुए पहला ऊपर के रैक में कोलगेट रखा हुआ है रेड लेबल रखा हुआ है क्लोजअप रखा हुआ है।

टैटू का दुकान नजर आ रहा है ।

इसके बोर्ड में इंडियन टैटू लिखा हुआ है।